यह एक एस.बी.आई ए.टी.एम बैंक है यहां पर आदमी आए हुए हैं और लाइन में है शायद वे बाइक के पार्किंग किया हुआ है और यहां पर आ मनी विड्रा करके निकल रहे हैं।

स सभी लोग व्यायाम कर रहे हैं यहां पर हरा-भरा वृक्ष है और कुछ पौधे हैं यहां का नजारा बहुत सुंदर लग रहा है।

यहां एके यहां एके --

यहां का नजारा बहुत अच्छा है।

और साथ में गाड़ी पार्किंग बाइक पार्किंग कैब पे करे हुए है ये एक बैठी हुई आदमी है जो स्कूटी पे बैठी हुई है।

यहा एक हैं इंडियन बैंक का ब्रांच है और साइड में इंडियन बैंक का ए.टी.एम. है यहां पर एक कार खड़ी हुई है दो आदमी जा रहे हैं एक बाइक है और एक बाइक है और ये सिक्योरिटी गार्ड --